नारंगी और सफेद रंग की चादर बिछाई गई है।

जिसमें पत्थरों का रास्ता दिया गया है।

यह एक सफेद रंग की बड़ी सारी इमारत है।

पीले और नीले रंग की रंग किया हुआ है।